मूर्ति रखी हुई है उसके पीछे एक डेकोरेशन किया हुआ अ-अ पर्चा लगाया गया है।

यह एक खिची गई तस्वीर है इसमें एक तलाव दिखाई दे रहा है तलाव मे पानी है और आसमान मे ऑरेंज कलर और व्हाइट कलर का आसमान दिख रहा है।